मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है चित्र यानी क्लिनिक दिखाई दे रही है चित्र के अंदर टेबल दिखाई दे रही है चित्र के अंदर --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

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा चित्र के अंदर पहाड़ दिखाई दे रहा है।

चित्र के अंदर एक महिला खड़ी दिख रही है चित्र के अंदर खिड़की दिख रही है चित्र के अंदर--

कपड़े दिख रहे हैं चित्र के अंदर अलमारी में कपड़े जमे दिख रहे हैं चित्र के अंदर पानी का बॉटल दिख रहा है चित्र के अंदर बाल्टी दिख रही है।

चित्र के अंदर लाइटिंग दिखाई दे रही है चित्र के अंदर खाने का ईस्टॉल दिखाई दे रहा है।

मार्केट दिखाई दे रही है चित्र के अंदर रोड दिखाई दे रही चित्र के अंदर बाइक दिखाई दे रही--

एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र के अंदर रूम दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर--

चित्र के अंदर पाइप दिख रहा है चित्र के अंदर पोस्टर दिख रहा है चित्र के अंदर गेट दिख रहे है।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

मंडप दिख रहा है चित्र के अंदर स्टेज दिख रहा है चित्र के अंदर लाइटिंग दिख रही है।

चित्र मे पिलर दिखाई दे रहा चित्र मे तार दिखाई दे रहे है चित्र में खंभे दिखाई दे रहे--